एक सामने केक दिखाई दे रहा है। जिस पर लिखा हुआ है हैप्पी --

थर्ड एनिवर्सरी और ये जो केक है व्हाइट कलर का है और गोल्डन है इसपे डिजाइन ।

एक कोचिंग है और यहां पर बहोत सारी लाइट लगी हुई हैं। पंखा लगा हुआ है और यहां पर बहोत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और सामने एक--

बहोत सारे बच्चे जो कि क्राफ्ट का काम कर रहे हैं।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शादी का यहाँ पर जयमाला है। यहाँ पर बोहोत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है और सामने एक --

यहां पर एक के चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक चर्च है जोकि बहोत बड़ा बिल्डिंग जैसा नजर आ रहा है। यहां पर इसका कलर व्हाइट --